यहां पे एक पोस्टर लगा हुआ है लिखा हुआ है हिंदी में यहां पर--

यहां पे मट्टी है मट्टी का सड़क है यहां पे एक पोल है यहां पर बहुत सारे पोल है यहां पर लाइटे भी लगे है।

बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है इसके साथ में और पूछे है यहां पर।

यहां पे एक पेड़ पौधे लगे हुए हैं हरे पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे टोपी रहे हैं बच्चे--

लाइट भी लगे हुए हैं बहुत कलर लाइटे लगे हैं।

काम होता है यहा पर कैमरा वैमरा पंखे वंखे सब लगे हुए हैं साथ मे यहा पर बहुत सारे--

झंडे भी लगे हैं ऊपर और पेड़ पौधे भी है यहां पे बंदे बैठे भी है यहां पर--

यहां पे एक बहोत बड़ा पार्क है इसके अंदर झूले ऊले हैं यहां पे खेरे बहोत सारे घर बना हुआ कांच का है।

यहां पर झूले हैं पेड़ पौधे लगे हुए वय दो व्यक्ति बैठे हुए बहुत सारे बैठे हैं गाड़ी भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर।

यहां पे पंखे लगे हैं बहुत सारे पन--

अ यहां पर दो बंदे खड़े हुएं है।

कांच का दरवाजा है पंखा लगा हुआ है।

टेंपो पे जा रहे हैं सारे लोग बैठे हुए हैं यहां पे एक ऊंचा से ऊपर--

यहां पे बस है यहां पे टेंपू है यहां पे बहोत सारे लोग खड़े हुए है बैक यहां पर अ एक यहां पे एक मैक लगा हुआ है साथ में --